जैसा की देख पा रही हु ये एक रावण है जोकि पिले कलर का मकुट पहने हुए है।

और इसके बहोत सारे मुँह भी है दस मुँह है।

काले कलर की पेण्ट भी है कुर्सी है ब्राउन कलर की भूरी कलर की और सिलेटी कलर --

और एक कागज पकडे हुए आदमी जोकि जैकेट पहने काले और लाल कलर की--

जैसा कि मैं देख पा री हूँ यहाँ पे एक फर्स्ट लिखा हुआ है जोकि लाल लाल कलर रंग से है और यहाँ पर हरे- हरे कलर के हरा कलर की एक मशीन भी रखी हैं।

जैसा मैं देख पा रही हूँ यहाँ सागर उद्यान पार्क लिखा हुआ है।

और यहाँ पर बहुत सारी औरते बैठी हुयी है एक लड़की खड़ी हुयी है जोकि ऑरेंज कलर की की कुर्ती पहने हुए है |--

जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे रंग के के गुब्बारे अम्म गुब्बारे लगे हुए है।

अ इनका कलर नीला लाल और वाइट यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ है वाइट कपड़े पहन--

जिसके किनारे एक फूल भी लगे हुए है पीले कलर के।

और ये जमीन के जीने के किनारे- किनारे पिले ऑरेंज से ग्रीन से कलर किया गया --

जैसा की मैं देख पा रही हूँ ये एक गांव है जिसकी जमींन भूरे कलर की है।

और एक पर्दा है हरे-हरे रंग का और एक घड़ी भी लगी है जिसका रंग वाइट कलर का है और एक पंखा --

और इसमें रैलिंग भी लगी है हरे-हरे रंग के और यहाँ पेड़ भी है पानी का रंग सिलेटी है और यहाँ पर और बहोत सारे स्पीकर भी लगे हुए है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ ये एक चर्च है ऊपर गॉड का चिन्ह भी बना है।

और यहाँ पर पेड़ भी हरे-हरे रंग के है।

और इसका क रूम का कलर वाइट कलर का है और यहाँ पर एक प्रिंटर भी रखा हुआ हैं।

जैसा की मैं देख पा रही हु यह एक जिम है। जिम में बहुत सारी एक्सरसाइज करने बाली मशीन भी है। जिम का रंग हरे काले रंग का है।

और यहाँ पर जो कर दीवारों में कलर है वो वाइट रंग का है।

और यहाँ पे पंखे और भी लगे है वाइट रंग के और यहाँ पे लाइटें भी वाइट रंग की हैं।

जैसा की में देख पा रही हूँ यहाँ एक मंदिर है मंदिर के किनारे-किनारे पेड़ लगे हुए है हरे हरे रंग के और मंदिर का जो कलर है वो वाइट कलर का है।

और यहाँ सटर भी ब्लैक ब्लैक रंग का है और यहाँ एक बाइक भी है और--

जैसा की मैं देख पा रही हूँ ये एक गार्डन है यहाँ पर एक बच्चा पानी पाइप से पानी देता दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ भी है।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ ये एक स्टेशन है यहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियां भूरे रंग की रंग की है।

और यहाँ पर बहुत साड़ी रैलिंग भी लगी हुई है।